जिसके कारण ये काफी खूबसूरत लग रहा है।

ये तस्वीर किसी बगीचे या पारक की नज़र आ रही है जो की काफी सुन्दर लग रही है ।

उस तस्वीर के अंदर देखा जाए तो बहुत सारा कबाड़ भी आजू-बाजू पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ।

ये तस्वीर वाहनों की नज़र आ रही है इस तस्वीर के अंदर बहोत सारे वाहन खड़े हुए है ।